रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है ऊपर शेड दिखाई दे रहा है जस्ट एक सामने बिजली के तार जाते हुए दिखाई दे रहे है रेलवे स्टेशन के यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है।

रोड के आसपास बाउन्ड्री वॉल बनी हुई है और बाउन्ड्री वॉल के आसपास बड़े-बड़े झाड़ लगे हुए है और गार्डन के सामने एक बड़ी बिल्डिंग इमारत दिखाई दे रही है चार मंजिल।

इसमें अगरबत्ती वगैरा भी सुगन्धित अगरबत्ती प्रेरणा करती हुई दिखाई दे रही है।

ट्रेक्टर के ऊपर छतरी भी लगी हुई है और ट्रेक्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमें सूरत का शाम का सूरज का शाम का समय दिखाई दे रहा है नीचे बहोत पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है सामने बड़ी-बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है उसके साइड में एक बड़ा सा गुंबद दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं कुछ गेंदे के फूल भी दिखाई दे रहे है कुछ मोगरा के फूल दिखाई दे रहे हैं कुछ जास्मीन के फूल हैं तो कुछ गुलाब के भी फूल दिखाई दे रहे हैं और आस-पास के टोकरी भी रखी हुई ---